यह एक वीर बुक सेंटर है जो ऊपर रेड कलर का पट्टी लगी हुई है उस पर लिखा है ब्लैक कलर का वो --

और नीचे गार्डन है जो की हरी-हरी सब घाँस है छोटी-छोटी घाँस पे लाइटे पड़ी हुई हैं।

ये एक मॉल लग रही है जो कि इसमें बहोत सारें आदमी बैठे हुए हैं।

एक बाल्टी ब्लू कलर की रखी हुई है छोटे-छोटे गमले रखें हुए हैं और एक छोटा सा पेड़ लगा हुआ है।